ये एक क्लीनिक है यहां पर हमें दो मोबाइल नंबर भी--

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे--

एक्सर्साइज करने के लिए मशीन दिखाई दे रइ है।

आसपास हमें पेड़ दिखाई दे रे हैं।

दिख रहा है आसपास हमें पेड़ नजर--

इस पिक्चर में हमें गट्टी दिखाई दे रही हैं।

सुंदर और सुहाना लग रहा है।

इसे हम पीकॉक भी कहते हैं।

और व्हाइट दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कि आर्टिफिशियल फ्लावर --

फूलों की माला डाली हुई है।